आर चेयर डली हुई है दूर एक घर -सा बना हुआ है पास में एक गाँव -सा लग रहा हैं |

बहुत सारी मछलियाँ छोटी -बड़ी रखी हुई है एक आदमी मछली को ले छिल रहा हैं ।

शायद किसी चीज का डेकोरेशन का सामान है मालाये भी टंगी हुई है एक आद एक औरत खड़ी हुई है।

काँच के बर्नी रखी हुई है जिसमें बिस्किट रखी हुए है एक आदमी है वे चार- चार लोग हैं |

ये बहुत बड़ी नदी -सा है इसमें बोटिंग चल रही होइ है दो बहुत दूर है एक ग्रीन कलर की बोटिंग है जिसमें दो आदमी हैं |

उसमे एक कार खड़ी हुई है कार में ब्लैक कलर की शर्ट ब्लू कलर का पेंट पहने हुए जा रहा है और वो बाइक भी खड़ी हुई है।

दो लोग सेल्फी भी ले रहे है।

सफेद और नीले लाल कलर की माला पहनी हुई है।

वाइट और नीले कलर का पलंग हैं ।

नीले कलर के और उनके ऊपर पैंट ऐ सी भी लगी हुई है ब्राउन कलर का गेट है और रेड कलर का कंबल रखा हैं।

लाल कलर की मिट्टी है नीचे और एक आदमी बैठा हुआ हैं ।